latex में mathematical typesetting पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
याद रखें हमे इसे latex कहना चाहिए न कि latex
इस tutorial में हम latex में गणितीय चिन्हों को बनाना सीखेंगे
विशेष रूप से गणितीय mode में जाना और इससे बाहर निकलना spaces का कार्य और उनको बनाना सीखेंगे
गणितीय चिन्ह
अंततः a m s math package और matrices बनाने में उसका उपयोग
मैं इस tutorial को अपने 10000 rupee से कम के laptop पर बना रही हूँ
मैं ubuntu texworks और latex उपयोग कर रही हूँ
पूर्वापेक्षायें निम्न हैं – latex पर बुनियादी spoken tutorials
sidebyside tutorial की जानकारी
सभी हमारी website पर उपलब्ध हैं
maths maths tex file उपयोग करुँगी
यह हमारे web पेज में code file में उपलब्ध है जहाँ आपने यह tutorial देखा
उसी स्थान पर आपको tex user group india से यह pdf फाइल मिलेगी
नियत कार्यों के समय हम इसे उपयोग करेंगे
अब मैं texworks window पर जाती हूँ
मैंने पहले ही maths tex file खोल ली है
कृपया इस file को download करें और मेरे साथ अभ्यास करें
हमने पहले ही we commands देख we हैं जो इस file के ऊपर हैं
यह command paragraph indent को हटाती है
हम एक नियत कार्य द्वारा इस कथन के प्रभाव का अध्ययन करेंगे
हम greek चिन्हों के साथ शुरू करते हैं जो गणित में उपयोग होते हैं
हम latex में गणितीय mode में जाने के लिए dollar चिन्ह का उपयोग करते हैं
हम अल्फ़ा के साथ शुरू करते हैं हम dollar back slash alpha dollar लिखते हैं
अब compile करते हैं और pdf में greek अक्षर अल्फ़ा देखते हैं
पहला dollar दिखाता है कि हम गणितीय mode में जा रहे हैं
दूसरा dollar दिखाता है कि हम इस mode को mode रहे हैं
अब से मैं dollar या back slash का स्पष्टतया से उल्लेख नहीं करुँगी
लेकिन आपको बिलकुल वही करना है जो आप screen पर देखते हैं
उसी प्रकार हम beta gamma और delta लिखते हैं अब compile करते हैं
मैंने tex file को सेव नहीं किया क्योंकि texworks यह अपने आप करता है
इन्हें डिलीट करते हैं
आगे हम गणितीय अभिव्यक्ति expressions में spaces के सिद्धांत से शुरू करेंगे
how alpha a को कैसे बनाते हैं जो alpha और a का गुणनफल है
अब alpha a की कोशिश करते हैं
compile करते हैं
latex बताता है कि alpha a एक अपरिभाषित control sequence है
बताता है कि यह इस command को नहीं समझता मैं इसे बंद करती हूँ
latex प्रत्येक command के बाद एक space से इसे handles करता है
alpha के बाद एक space देते हैं
compilation को रद्द करते हैं दोबारा कम्पाइल करते हैं; इसने समस्या हल कर दी
चूँकि यह एक command को निलंबित करने में उपयोग होता है वो space pdf में नहीं दिखता है
यदि हम output में spaces लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है
हमें latex को स्पष्टता से बताना है जैसे हम अभी करते हैं
अब हम latex से एक नयी line शुरू करने को कहते हैं
अब हम alpha backslash space a लिखते हैं
compile करते हैं
यह space देता है
यदि आप ज्यादा space चाहते हैं तो quad उपयोग करें जैसे हम अभी करते हैं
compile करते हैं
आप देख सकते हैं कि quad ज्यादा space देता है
अब हम अन्य विषय पर जाते हैं
अब आखिरी दो लाइनें डिलीट करते हैं compile करें
font में क्या होता है जब हम text से गणितीय mode में जाते हैं
इसे समझने के लिए अब लिखते हैं product of $\alpha and a is
compile करें
आप देख सकते हैं कि दोनों a का font भिन्नभिन्न है
इस a को भी dollar चिन्ह के अन्दर लिखने से यह हल होता है
compile करते हैं
अब इन दोनों a का fonts समान है
variables के font को समान न रखना एक सामान्य गलती है
अब इन्हें हटाते हैं
compile करते हैं
माइनस चिन्ह लाने के लिए एक नियम पर चर्चा करते हैं
मानिए कि हम माइनस alpha लिखना और compile करना चाहते हैं
compile करें
ध्यान दें कि यहाँ माइनस चिन्ह एक छोटे dash की तरह दिखता है
हम dollar चिन्ह के अन्दर भी माइनस चिन्ह copy कर सकते हैं
दोबारा compile करते हैं
अब माइनस चिन्हों के बीच अंतर देखें दूसरा वाला वो है जिसकी हमें ज़रुरत है dash उपयोग नहीं किया जाना है
dollars चिन्हों में माइनस चिन्ह न रखना नौसिखियों की सामान्य गलती है
इन सभी को डिलीट करते हैं
आगे हम frac command को समझायेंगे जो fractions बनाने में उपयोग होती है
frac a b compile करें
यह a by b बनाता है frac command space से समाप्त होती है यह दो अर्ग्युमेंट्स के लिए दिखती है
पहला character a पहले आर्ग्युमेंट की तरह लिया जाता है यह numerator यानि अंश बनता है
दूसरा character b दूसरे argument की तरह लिया जाता है; यह denominator यानि हर बनता है
ध्यान दें कि a और b का size अपने आप ही छोटा हो जाता है
क्या होता है यदि लम्बे characters हों
क्या होता है यदि हम ab by cd बनाना चाहते हैं मैं चाहती हूँ कि आप इसकी कोशिश करें
latex में एक character से लम्बे अर्ग्युमेंट्स ब्रैकेट्स से बंद किये जाते हैं
उदाहरण के लिए यहाँ ब्रैकेट्स लगाते हैं
जब हम इसे compile करते हैं तो हमें वांछित output मिलता है
ब्रैकेट्स में सभी प्रविष्टियाँ single आर्ग्युमेंट की तरह ली जाती हैं
परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति भी ब्रैकेट्स में किसी भी expression को प्रविष्ट कर सकता है as इन सभी को डिलीट करते हैं
अब हम subscripts और superscripts देखेंगे
x underscore a x sub a बनाता है
a का size एक उचित स्तर तक अपने आप ही the जाता है
क्या होता है यदि हम ab को subscript की तरह चाहते हैं आपको ब्रैकेट्स उपयोग करने हैं यह अपने आप करें
superscripts caret या up arrow चिन्ह से बनती हैं
उदाहरण के लिए यदि आप x की घात 3 बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा x up arrow 3
हम subscripts और superscripts एक साथ भी लिख सकते हैं
अब x sub a superscript b लिखते हैं; compile करते हैं
एक बार फिर ब्रैकेट्स उपयोग करके हम जटिल subscripts और superscripts बना सकते हैं मैं इसे डिलीट करती हूँ
आगे हम matrices पर जायेंगे
a m s math package कुछ matrix परिभाषाएं रखता है जो मुझे पसंद है
हम इसे usepackag command से सम्मिलित करते हैं
ampersand यानि and चिन्ह columns को अलग करने में उपयोग किया जाता है
अब एक matrix बनाते हैं
हम begin matrix a और b end matrix लिखते हैं dollar चिन्ह को न भूलें
compile करें और आपेक्षित की तरह matrix देखें
add मानिए हम इसमें एक दूसरी row जोड़ना चाहते हैं हम दो back slashes डालते हैं जिसका मतलब है अगली line में जाना
मानिए दूसरी row में हम तीन प्रविष्टियाँ चाहते हैं जैसे c d e compile करें और अभी शामिल हुई दूसरी row को भी देखें
मानिए हम matrix को begin और end में pmatrix में बदलना चाहते हैं
compile करें और यह मिलता है
अब समय है कि आप it लगाएँ अब हम slides पर जाते हैं
अब सारांशित करते हैं कि हमने इस ट्यूटोरियलमें क्या सीखा
गणितीय mode में जाना और बाहर आना spaces उपयोग करना और उन्हें बनाना
fractions subscripts और superscripts ब्रैकेट्स में एक आर्ग्युमेंट परिभाषित करना
matrices बनाने के लिए amsmath package
अब मैं कुछ नियत कार्य देती हूँ
यह नियत कार्य spaces पर है – बड़े और छोटे video को रोकें slide को पड़ें और नियत कार्य करें
यह नियत कार्य ब्रैकेट्स उपयोग करके fractions पर है
यह नियत कार्य subscripts और superscripts पर है
इस नियत कार्य से हम matrices बनाने के कुछ अन्य methods सीखेंगे
यह नियत कार्य अधिक गणितीय चिन्हों को बनाने पर है
यह tug india latex guide पर आधारित है हम अभी वो document देखते हैं
मैनें आपसे पहले ही हमारे web पेज से इस document को download करने को कहा है
आप इस document में दिए कुछ चिन्हों को दोबारा करेंगे
अगले नियत कार्य में आप अधिक चिन्हों की कोशिश करेंगे
यह नियत कार्य भी tug india document पर आधारित है
आप इस नियत कार्य में paragraph indent के साथ परीक्षण करेंगे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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
क्या आपको इस spoken tutorial में कोई प्रश्न है कृपया इस site पर जाएँ जहाँ आपको प्रश्न है do minute और second चुनें
संक्षिप्त में अपना प्रश्न पूछें हमारी team से कोई उनका उत्तर देगा
spoken tutorial forum इस tutorial पर विशेष प्रश्नों के लिए है कृपया असंबंधित और सामान्य प्रश्न post न करें
यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को शिक्षण सामग्री की तरह उपयोग कर सकते हैं
spoken tutorials में कवर नहीं किये हुए विषयों के लिए इस address पर stack exchange पर जाएँ
latex पर उत्तर प्राप्त करने का यह बहुत अच्छा स्थान है
आपके पास कार्यशालाओं प्रमाणपत्रों आदि पर भी प्रश्न हो सकते हैं इसके लिए इस email address पर हमसे संपर्क में रहें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद